बाहर आंगन भी है पेड़ भी लगी है।

और बैलून भी टंगे हुए हैं।

और इस तरह फैन भी लगे हुए है और झालर जैसे लाइट ह लगी हे।

पर्दे लगे हुए हैं ऊपर एक बोर्ड लगी हुई है।

टेबल लगी है और चेयर लगे हैं और कुछ पोस्टर लगे हुए हैं।

फैन लगे हुए हैं और लाईट लगी गई हैं।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा मंदिर है।

इस चित्र में बहोत बड़ा मेंन रोड बना है मेंन रोड के पास एक पेट्रोल पंप है और बहोत सारी गाड़ियाँ आ री है जा री है।

बेड लगे हैं और खाने पीने के बर्तन भाड़ा रखें गए हैं।

और बाहर पे आंगन में खड़े हैं पेड़ के पास उस तरफ बहुत सारी पेड़े लगी हुई है।

शो पीस के छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।

आ प्राचीन काल जैसा महल दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे--

टेढ़ी लगी हुई है और उस तरफ एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

उसके ऊपर पूरे फूलो फूलो से--

ऊपर छोटी छोटी लाइट जल रही है।

दूध गंजी में रखे हैं और--

इस चित्र में एक बड़ी बड़ी चट्टान है चट्टानों से पानी झरने की तरह नीचे गिर रहे हैं और--